इस फोटो में कोको कोला पेप्सी नजर आ--

फोटो में कुर्सी नजर आ रही है।

इस फोटो में ऑफिस नजर आ रहा है।

इस फोटो में श्री राम नजर आ र--

इस फोटो में पानी की टंकी नजर आ रही है इस फोटो में --

इस फोटो में आर्मी पब्लिक --

इस फोटो में चट्टानें नजर आ र--

ये इस फोटो में हमें पानी नजर--

इस फोटो में गार्डन नजर आ रहा है।

फोटो में जग नजर आ रहा है।

इस फोटो में पाइप नजर आ रही--

नजर आ रहा है इस फोटो में गंजी--

इस फोटो में जगह नजर आ रहा इस फोटो मे लोहा नजर आ रहा --

इस फोटो में मशीन आ रही है।